बच्चे आकर अपनी ज्ञान में इजाफा करते हैं।

चलने वाला बाजार है।

और अपने महबूब के नाम भी लिख कर जाते हैं।

खाना भी बहुत मजेदार मिलता है।

ये जो दो कॉफी नजर आ रही है कॉफी इंसान के लिए बहुत ही जरूरी चीज है।